पार्क जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ हरियाली भी दिखाई दे रही है एक स्टील की बनी रेलिंग दिखाई दे रही है ईंटों की बनी दीवार भी दिखाई दे रही है।

मुझे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

रिंगे दिखाई दे रही है टाइल दिखाई दे रहे हैं और पास में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

इस इस तस्वीर में मुझे पार्क जैसा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक सीडी जैसी दिखाई दे रही है कुछ --

इसके आगे एक पोस्टर भी लगा हुआ है।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

पास में से एक लोह का बड़ा सा गेस्ट गेट दिखाई दे रहा हैं जिसमें ब्लैक और कुछ चांदी सोने का कलर का कलर भी दिखाई दे रहा हैं।

इससे तस्वीर में मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कोई गैरेज के अंदर हैं।

एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके पास में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ मुझे कुछ महल जैसा दिखाई दे रहा है।

सरियों की बनी हुई रेलिंग दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कोई पार्क है इसपे कुछ पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

इसलिए तस्वीर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई मंदिर है बहोत सारी सीढियां दिखाई दे रही है कुछ--